इस अदृश्य मे यह दिखा रहा है यहां पे एक बेड है एक रूम में जिसमें एक टेबुल है।

उपर दुकान मे बहुत सारा आलू टमाटर प्याज रखा हुआ है और उधर एक आदमी बेच रहा है।

इस अदृश्य में यह दिखाया गया है कि एक सामने दरवाजा है इधर दो दौड़ने वाला लगा हुआ है यहां पे एक फुटबॉल है।

बांस में बाँधा हुआ है उधर दो ट्रैक्टर लगे हुए हैं जो एक खुल रहा है।

इस दृश्य में ये दिख रहा है कि यहां पे बहुत सारा लोहे का लगा हुआ है जिसमें पेड़ उगाया गया है।

एक डॉक्टर है जो एक आदमी का दांत में दांत सही कर रहा है बाकी इधर सब बोर्ड रखा हुआ है एक मशीन रखा हुआ है।

उधर तीर रखा हुआ है। एक आदमी है जो हाथ मे कुछ लिए हुए है पीछे बहुत सारे लोग है।

इस चित्र में ये दिखाया गया है यहां एक बहुत ही बड़ा डैम है जिसके बहुत दूर दूर बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है।

दो यहां पे आदमी हैं जो कि हाथ गल गले पर रखे हुए हैं एक नांव पे बैठे हुए हैं।

इस चित्र में ये है कि ये जीम है बहुत ही बड़ा जो ब्लू ब्लू रंग से सगरो चमक रहा है।

इस चित्र में ये दिखाया गया है कि यहां पे एक दुकान है जो कि यहां पे किताब पेन ये सब मिलता है।